जामा मस्जित अल्ल हदीज ये मशीद का नाम है।

ये एक बहुत प्यारा सा झरने की तस्वीर है जहासे--

यह स्टार्टिंग की बिउटीफूल सी ओपेनिंग की वीव है आईथिंग सो इसके अंदर येल्लो अँड येल्लो फूल्स अँड बैलून्स से डेकोरेशन किया गया है।